और पानी कोका कोला का बोतल भी दिखाई दे रहा है।

इस हाल में फैन और ए_सी भी नजर आ रहा है।

यहां पे एक घर भी नजर आ रहा है।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

इस पिक्चर में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है।

घर का सामने एक सेकेंड फोर व्हीलर भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा पेर भी है।

डाइनिंग रूम का एक दर्जा भी है।

सारा लड़की भी नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक फार्मेसी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा ट्री भी है।

यहां पे मुझे बहोत सारा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।